एक आदमी उनको कुछ समझा रहा है।

उसमें ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है। उसके पीछे सफ़ेद कलर की दीवार है जिसमें टाइल्स लगे हुए हैं।

यहां एक मकान दिख रहा है। उस मकान मे नीचे कोई एक आदमी खड़ा हुआ है।

यहाँ एक हॉल है। हॉल में एक बेंच पड़ी हुई है और दो तीन कुर्सियां रखी हुई हैं उसके पीछे की तरफ़ --

और लाल कलर की स्टेज है कुछ बैलून लगाए हुए हैं। लाल कलर के सफ़ेद कलर के नीले कलर के बैलून लगे हुए हैं।

एक आदमी किसी बच्चे को गोदी में लिए बैठा है उसके बाजु में मेडिकल स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है लाल कलर का|

यहाँ एक बस खड़ी हुई दिख रही है जिस बस का कलर सफ़ेद है और उसके पीछे कुछ लाइट के खम्बे दिख रहे हैं।

इस कमरे में एक खिड़की दिख रही है। बाजू में एक लोहे की जाली दिख रही है ऊपर उसके कुछ लिखा हुआ है।

यह एक ग्राउंड पड़ा हुआ है उस ग्राउंड मे कुछ पेड़ लगे हैं और उन पेड़ के निचे कुछ सफ़ेद कलर से पुते हुए हैं।